और ये पानी जंगल होकर गुजरे और बहोत बड़ा-बड़ा पहाड़ है।

और पहाड़ के सामने एक बहोत बड़ा बिजली का खुटा है।